सामने दो गाड़ी के रंग सफेद है और पीछे दो काली गाड़ी दिखे।

यह किसी दुकान की तस्वीरें दुकानों में बहुत सारे चीजे टंगी हुई है और इसमें कोई भी कस्टमर नहीं आया अभी तक।

और सूर्य भी निकला हुआ है और अच्छा हैये तस्वीर--

यह तस्वीर भी किसी गली का है जहां पर एक घर है दो गलियां के मिल रही है। इस जगह पे --

यह किसी सालून की दुकान हैआ एक कस्टमर बाहर बैठा हुआ है दी केयर सालून की दुकान है ये--

और शायद बहुत अच्छा काटता होगा बाल सही है।

यह एक जिम की तस्वीर है बाहर से किसी के तस्वीर है और आरोटिक जिम इनका नाम--